खेल रहे हैं और एक--

इस तस्वीर में एक कपड़े की दुकान--

दुकान में कपड़े बेचे जाते हैं।

इस तस्वीर में एक आदमी दिखाया गया है जो कि जिम में खड़ा है।